जहां पे एक महिला जो है हाथ बंधे हुए खड़ी है.

यह एक नदी का फोटो दिख रहा हे जिसमे एक व्यक्ति खड़ा हे उसे देख रहा हे.

सामने में एक व्यक्ति उसको मछली दे रहा है मछ --

मछली बिभिन्न प्रकार की वहां पे रखी हुई है.

उधर दो उधर दो व्यक्ति खड़े हैं.

यह एक दुकान है जिसमें बहुत सारे सामान रखे हुए हैं रैक के ऊपर में.

और उनके ऊपर में ट्यूबलाइट जल रहे हैं.

यह कपड़ा का शोरूम दिख रहा है जिसमे कुछ ऐ-ऐड भी लगा हुआ है.

तामने रैक मे बहुत सारे कपडे रखे हुए हे.

और चलने के जगह पे कुछ ईंटें लगे हुए हैं.

यहाँ पे एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है जीसके बगल मे खरा आदमी उसका सायद बाल दाढ़ी बना रहा है.